एक बड़ी सी नदी है जिसमें छोटी सी नाव दिखाई दे रही है।

ये एक छत है। छत पे पत्थल बिछे हुए हैं।

यह एक पार्क है जिसमें छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं हरे हरे।

छोटी छोटी पत्तियां दिखाई दे रहीं हैं।

एक रूम है जमीन में टाइल्स लगी है।

एक रॉड लगा हुआ है टॉवेल टंगी है उसपे।

जमीन पर पत्थल बिछे है।

एक बड़ा सा घर है व्हाइट कलर का पेंट हुआ है।

एक आदमी बैठा हुआ है कुर्सी पे डंडा लिए।

और जमीन पे कारपेट बिछा हुआ है ग्रीन कलर का।

और ऊपर फूलों से सजावट की गई है।

बनी है और वाइट कलर का दीवार में पेंट हुआ है।

यह एक शॉप है जमीन में टाइल्स लगी हुई है।

उसमें बहुत सारे कपड़े रखे हैं।

ऑरेंज कलर का पेंट हुआ है।

एक अलमारी बनी है और उसमें कुछ चीजे रखी हैं।

अलमारी के ऊपर बहुत सारी किताबें रखी हैं।

सामने एक बैनर लगा हुआ है वाइट कलर का।

लोग बैठे हैं वाइट कलर का कपड़ा पहने।

डंडे लगे हैं। बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जमीन मिट्टी की है गुम्मे रखे है बहोत सारे--

इसमें बहुत सारी कुर्सियां हैं।

एक दरवाजा दिख लगा है।

और बहोत सारी खिड़कियां हैं।

नीचे बहुत सारे खंभे हैं।

और हरी हरी घास निकली हुई है।

ग्रीन कलर के घर में पेंट हुआ है खिड़कियां बनी है।

और व्हाइट कलर का पेंट हुआ है शॉप में।

और कुछ बॉटले रखे हैं एक आदमी फोन लिए हुए हैं।

चेहरे पर मसाज किया हुआ है।

एक पेंटिंग टंगी हुई है जो एक औरत की है।

एक खंभा लगा हुआ है लोहे का--

यह एक कार है ब्लैक कलर की।

इसपे एक आदमी बैठा हुआ है।

इसमें एक बॉटल रखी है झोले में।

बाहर कार्टून रखे हुए हैं बहुत सारे बाइक है दुकानें बहुत सारी चीजें रखी हैं।

ऊपर छत पे टीन डली हुई है।

बेंच बिछी हुई है कुछ लोग बैठे हैं।